यहाँ छोटी-छोटी घांसे और उसके उधर साइड में एक डीसीएम खड़ी है जिसका दरवाजा खुला हुआ है। उसके पास एक आदमी खड़ा हुआ है। उसके पास बहोत सारी ईंटो का चट्टान --

वाइट कलर की हैं और दो पावे लगे हुए हैं जिसमें एक तंबू रेड कलर का तना हुआ है।

कार खड़ी हुई है जो कि वाइट कलर की है सीसा ब्लैक कलर का है और इसके पीछे बोहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो कि --

एक ये मदिर है जोकि ऊपर त्रिसुल लगा हुआ है एक झण्डा लगा हुआ है निचे बहुत सारी खिडकियाँ है जो की खुली हुई है।

वाइट कलर की हैं| पीछे मेज पड़ी है इस्पे एक डेटोल की बोत्तल पड़ी है और इस्पे--